ये पर चिल्ला भी बांघ्युं छ कुछ गत्ता का टुकड़ा भी छ लगायां निसाण फुणु हम त फर्स दिखेण लग्युं दिखेण से वे एक दुकान लगण लगीं पिछाड़ी बिटि हम त एक शटर और एक दरवाजु दिखेण लग्युं जै पर कांच भी दिखेण छ लग्युं।

ये चित्र मा हम तैं एक बड़ी दुकान दिखेण लगीं जू देखणा में हम तैं सब्जी की दुकान लगण लगीं जै का भैर फणा कुछ ठेला करा लग्यां।

उडें हमते कुछ बैठण की कुर्सिन दिखेण लगीं। ओर पोर हमते बड़ा बड़ा कांचन दिखेण लग्यां बड़ा बड़ा पोस्टरन दिखेण लग्यां ज्युं का भीतर हमते कुछ सामान दिखेणु।

अगाड़ी हम त एक बड़ू ब्लैक बोर्ड छ दिखेण लग्युं जैका एंच फणि लाइट छ लगीं। उंडे हम त दरवाजा दिखेणु पार मा हम त बरांडाम एक नौनियाल भी दिखेण छ लग्युं।

ये चित्र मा हम तैं एक बड़ी इमारत दिखेण लगीं जै का निशाना हम तैं एक कमरा दिखेण लग्युं ये का भैर बिटि हम तैं कांच कू दरवाजू दिखेण लग्युं भैर बिटि कुछ पोस्टर भी लग्यां भैर बिटि कुछ फूल भी लग्यां।

दिखेण सी यु एक ऑटोरिक्शा कु शोरूम छ लगण लग्यु पैथर फणा हमथे कुछ बड़ा बड़ा लुआ का रैकन दिखेण लग्या जूका एैच फणा कुछ डबला कुछ पैकेट अ कुछ बड़ा बड़ा डब्बा आ कुछ कंटरन दिखेण लग्यां।

दिखेण से यु जगह हम ते ऑटो रिक्शा की फैक्ट्री छा लगण लगीं जफणि हम ते एक ऑटो रिक्शा दिखेण लगीं जैकु रंग लाल छा वै पर एक पर्दा भी लग्युं अगाड़ी फणा हम ते यनि और रिक्शा दिखेण लगीं।